चट्टान के नीचे एक पुरुष खड़ा है उसका पेंट काला रंग का है।

इस दुकान के अंदर बहुत सारे रैक लगा हुआ है।

इस दुकान के अंदर एक कुर्सी रखा हुआ है।

इस दुकान के अंदर एक टेबल है टेबल पर कुट रखा हुआ--

इस रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं।

यह एक बहुत बड़ा एच_डी_एफ_सी बैंक है।

इस झरना में एक पुरुष लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ है।

इस दुकान में बहुत सारे टायर रखा हुआ है।

इस दुकान को अगल बगल बैलून से सजाया गया है।

इस दुकान में बहुत लंबा एक काउंटर रखा गया है।

इस नहर के बीच में छोटे छोटे पौधे हैं।

इस दुकान के छत को उजले रंग से पुचारा किया हुआ है।

इस दुकान के अंदर बहुत सारे बैलून लगा हुआ है।

इस कंपनी में बहुत बड़ा गेट है।

यहां पे बहुत सारे कीयारी बना हुआ है।

इस कियारी के अगल बगल बहुत सारा पेड़ पौधे हैं।

इस हाथी के लाल रंग के कान को पेंट किया हुआ है।

इस मूर्ति के पीछे बहुत बड़ा मकान है।

मूर्ति के बगल में हरे रंग का पौधा लगा हुआ है।

यह एक रैक में शीशा लगाने का दुकान है।

इस कप में बहुत सारे रंग बिरंग का पेंट लगा हुआ है।

इस रूम के दीवाल पर एक घड़ी लगा हुआ है।

यह एक सार्वजनिक ऑपरेटिव है।

इस रूम के अंदर बहुत सारे पुरुष काला और सफेद चश्मा लगाए हुए हैं।

इस फूल के अगल बगल जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पेड़ है।

इस डैम के बांध के बगल में एक पुरुष बुलू रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

इस दुकान के अंदर बहुत सारे रैक बना हुआ है।

यह दुकान के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

इस रूम के गेट पर बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून लगा हुआ है।

इस दुकान के बगल में सुफेद रंग से पोचारा किया हुआ है।

एक पुरुष लाल रंग की टी_शर्ट पहनकर दरवाजे पर खड़े हैं।